तथा एक शीशे के दरवाजे के पीछे कुछ बाइके रखी हुई हैं।

यह तस्वीर एक प्राचीन किले या खंडहरों को दिखाती है।

एक महिला जिसने हल्की बैंगनी और सफेद रंग की साड़ी पहनी है।

यह तस्वीर एक दुकान की है जो ट्राफियां और पुरस्कार बेचती है।

इन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहने हैं तथा वो मैट पर बैठे हुए हैं।